और इसमें बहोत सारी चेयर्स है बहोत सारी टेबल है चेयर का कलर ब्राउन है टेबल का कलर ब्राउन है बहोत सारी प्लेट्स हैं।

सब है और बहुत सारे लोग है और पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे है बहुत सारे एक्टिविटीस है।

मशीनों का कलर ब्लैक है और कुछ येलो और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए हैं।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

इस फोटो में मुझे एक येलो कलर का होम दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे लोग खड़े हैं जिसका कलर पीला है और बाहर कुछ एक्टिवा --

और बाइक्स खड़ी हुई है एक आदमी है और बहोत सारे पेड़-पौधे हैं एक टीन है और --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

बाइक है और साइकिल है और जे_सी_बी है और यह एक पत्थरों को उठा रही है ईंटों को और बिल्डिंग मे ए_सी लगी हुई है।

जिस लड़के ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का निकर पहना हुआ है और पीछे उसके एक कमरा है।

और कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बिल्डिंग का कलर ऑरेंज --

इस फोटो मे मुझे बस्सटॉप दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी बसे खड़ी हुई है बसों का कलर सफेद येलो और पिंक है।

टॉफी के डिब्बे हैं नमकीन की थैली है चिप्स है कुरकुरे है वेपर्स है ब्रेड है और टॉस है फेम है और मैगी है।

मूर्तियां दिखाई दे रही है गणेश जी की मूर्ति है घोड़े हैं और ऊंट है और टेलीफोन है और --

और एक बस दिखाई दे रही है और बस का कलर ग्रे और रेड है और ब्लैक कलर की उसकी खिड़कियां हैं एक आदमी है जिसने बैग टांग रखा है और वो जा र --

फेविकोल है बहुत सारी बुक्स है टेप है वायर है।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

और एक पाइप पड़ा है जिसका कलर पीला है।

बैंक ए_टी_एम की मशी दुकान दिखाई दे रही है जिसके बाहर बोहोत सारे लोग खड़े हैं जिसके अंदर बोहोत सारे लोग हैं और --

इसके बाहर बहोत सारी बाइक्स खड़ी हुईं हैं।